बाइक के ऊपर शर्ट लटका हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ--

एक खुला ग्राउंड दिख रहा है उसमें गाड़ी धोने की रैंप लगी हुई है और एक गाड़ी --

गरम में सर्दी में पहनने वाले कपड़े दिखाई दे रहे स्वेटर ल लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ स्वेटर --

एक हॉल है उसके अंदर बहोत सारे डॉक्टर और नर्स बैठे दिखाई दे रहे उसके आगे टेबल रखे टेबल पर बलून --

इसमें टांगे हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारे कप ही कप नजर--

और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति साइन कर--